यह तस्वीर जिम के अंदर की है।

इनमें बहुत सारे लोग व्यायाम कर रहे हैं।

इनके बगल में एक बहुत बड़ा शीशा भी लगा हुआ दिख रहा है।

पिंजरे में कई पक्षी दिखाई दे रहे हैं।

महिला के आगे एक मोर पंछी भी नजर आ रहा है।

झील में कुछ लोग कार्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

टमाटर एक बड़े टोकरे या टब में रखे हुए हैं।

पीछे दूर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बागीचे का दृश्य है बागीचे में कई पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक भव्य भवन का दृश्य है।

भवन हरे रंग का नजर आ रहा है।

यह दृश्य धार्मिक संगीत को दर्शा रहा है।

मिठाइयां फल और अन्य खाने की आइटम टेबल पर सजा हुआ है।

जगह को बहुत साफ तरीके से सजाया गया है।

कई स्थानीय दुकानों और टेंट लगी हुई है।

कुछ ग्राहक मछलियां खरीदने के लिए खड़े हैं।

हॉल में पीले और नीले रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं।

कुर्सियों पर सुनहरे रंग की कवर और लाल रंग की रिबन बांधी हुई है।

इसके अंदर किसी कार्य क्रम को दिखाया गया है।

कुछ लोग इमारत के बाहर खड़े है।

युवक ने नि लाल रंग की हूंडी वाली टीशर्ट और जींस पहन रखी है।

यहां पर बहुत सारे जूते चप्पल सजाए गए हैं।

दुकान पर शीशे का गेट लगा हुआ है।

यह एक मस्जिद के अंदर का दृश्य है।

अधिकतर लोग सफेद टोपी पहनके बैठे हैं।